एक बड़ा-सा हाल है| खाने की कैंटीन जिस कैंटीन में एक आदमी खड़ा हुआ है और एक आदमी बैठा है और बहुत सारे टेबल अ और कुर्सियां लगी है।

एक बड़ा-सा रूम है जिस रूम में एक कुछ मशीने जिम मशीने आ रखी है और ऊपर पोस्टर लगा हुआ --

और कबर्ड के ऊपर ए कुछ नमकीन टोस्ट रखे हैं।

और गेट के बाहर एक आदमी खड़ा है और ऑटो और गाड़ी खड़े --

और अगल-बगल ए हरे-हरे पौधे हैं और कुछ घर है।

एक सामने बड़ा-सा इस्टेज है जिस इस्टेज में टेंट लगा हुआ है।

हाल है जिसमें एक सामने मशीन रखी है और बहुत सारे कम्प्यूटर रखे हुए हैं और स बाहर ए सीढ़ियां बनी है एक गमला रखा है दो गमले--

और जी कुर्सियां लगी है और गाड़ी ई जा रही है अगल-बगल ह हरे पेड़-पौधे --